सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है।

मुझे एक कैंटीन जैसी कुछ दिखाई दे रही है।

भी यहां लगा हुआ दिख रहा है।

एक दीवार पर हरा कलर हुआ है दिख रहा है।

एक दुकान है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टी_वी_एस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और आगे एस_एस लगा है।

यहां पर ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं।